यह एक चित्र है जहाँ पर लो यह एक चित्र है इस चित्र के माध्यम से हमें पता चला रहा है यह चित्र कहीं टैंक वैगरह का है जहाँ पर इनको थोक दिया गया है तो इसकी वजह से इसका एक्सीडेंट भी हो गया है।

यह एक चित्र है और यह एक चित्र किसी सैलून या पार्लर का है जहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ अपने चहरे के फेसियल करा रहा है और सामने से फ्रंट पे बैक से फोटो ले भी रहा है।

ये चित्र के माध्यम से हमे पता चल रहा है कि यह चित्र अ एक बहुत खूबसूरत सी जगह की है और यहां पे चारो ओर से पानी भरा हुआ है।

इस चित्र के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि यह --

जहाँ पर तरह-तरह से पेड़-पोधे और झूले वैगरह सब मौजूद है।

इस चित्र के माध्यम से तो हमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो भवन है यहाँ पर आप अपना कोई संबादित काम या फिर कुछ ऐसे ही ओ काम का उचित काम के लिए आप यहाँ पे आवेश कर सकते हैं।